नजर आ रही है कुछ पीले रंग के कागज से हैं कुछ लाल रंग के कुछ सफेद कुछ काले से हैं।

एक बड़ी सी पानी की टंकी भी दिखाई दे--

इस इमेज में एक तालाब दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है इसके बाहर बाइक को स्कूटी दिखाई दे रही है।

यह इमेज एक शादी समारोह की है इसमें एक--

इस इमेज में जनरल स्टोर की शॉप दिखाई दे रही है जिसके अंदर बहुत सारे।

पास ही कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही है बड़े से पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

एक इमेज में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। इसके बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं।